ये सब्जी मंडी है यहां पर कद्दूलौकीमूली आलूटमाटर मिलते हैं | यहां पर लोग सामान लिया करते हैं | यहां पर बहुत साड़ी भीड़ होती है |

एक झूला है जहाँ पर बहोत सारे झूले हुए लग ही रहे है। यहाँ पर बगीचा है। बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए जाया करते हैं। यहाँ पर पेड़--

बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।